नर्सरी है पटेल नगर रायसन रोड पे है ।

टंगे हुए हैं सौंदर्य रखे हुए हैं।

पुरानी मूर्तियों की तस्वीर बनी हुई है।

दूर के दूर खेत की बाउंड्री पे बड़े-बड़े --

जहाँ पर कई लाइटें लगी हुई है ।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा शेड दिख रहा है।

जिसके पीछे दुकाने दिख रही है।

जहां पर कई सारी कुर्सियां लगी हुई हैं।

ये शायद मूवी देखने वाला थिएटर है जो सुनहरी--

यहां पर एक बड़ा सा लाल कलर का पत्थर रखा है।

आसपास बोहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक ए_टी_एम के बाहर --

बहुत से लोग बैठे हुए हैं बैंक के लोग --

पेट्रोल डलवा रहे हैं रोड़ दिख रहा है।

पीछे कई सारे पेड़ दिख रहे हैं ।

और लोग लोगों के बैठने के लिए टेबल लगी हुई है।

इस तस्वीर में आपको एक रास्ता दिख रहा है।

पीछे स्कूल जैसा दिख रहा है बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिख रही हैं ।

ये एक शादी का हॉल दिख रहा है ।

इस तस्वीर में आपको एक बड़ा सा --

के बाहर कई दुकानें दिख रही हैं ।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है ।

जो कि इस एस_बी_आई म्यूचुअल फंड की है।

एक बड़ा खेत दिख रहा है जहाँ पर --

जिसके पास बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं ।